पेंटिंग करने का सामान मिलता है इसका नाम है एशियन पेंट --

यह एक चित्र है इसमें दिखाया गया है कि एक--

यहां एक चित्र है इसमें दिखाई दे रहा है कि एक तस्वीर है।

इसमें दिखाई दे रहा है कि एक तस्वीर शादी एक शादी की तस्वीर खींची गई है।

एक चित्र है इसमें दिखाया जा रहा है की एक होटल हैं।

फल फुड एक रेक में रखे हुए हैं जैसे कि एप्पल आम तरबूज--

टेबल के ऊपर उसके नीचे कई सारे कैबिनेट लगे हुए हैं और कई सारे अलग अलग टाइप के बल्ब भी हैं।

उसका शॉप नंबर है ऑफिस नंबर है।